सामने कुछ होटल जैसा दिख रहा है जिसमें सामने दो प्लेट रखी हुई है एक ग्लास रखा हुआ है और उसमें कुछ फ्लावर हैं।

कुछ बिल्डिंग है और बहुत सारे लोग हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं कुछ लोग बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं।

जिसमें से गाढ़ियों का जो कलर है वो सफेद कलर का है --

ये एक ऑफिस का चित्र है जिसमे पांच चेयर लगे हुए है।

चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे फूल हैं।

कुछ पार्क जैसा दिखाई दे रहा है जोकि ग्रीन कलर का है और बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं जोकि पेड़ भी है पौधे भी हैं।

कुछ ऑरेंज जो है वो नीचे गिरे हुए हैं ऑरेंज का कलर संतरा है।

लाइटों का कलर सफेद है और कांच में जो भी रखे हुए हैं वो सभी बहोत चमक रहे हैं और जो--

गाड़ियां सफेद कलर की है एक आदमी खड़ा हुआ है कुछ छोटे-छोटे घर बने हुए हैं।

कथ्थे कलर की बेडशीट बिछी हुई है लाल रंग का रखा हुआ है तकिया हरे कलर की है और स्टूल जैसा स्टूल जैसा बना हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

पीले कलर का पर्दा टंगा है ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ है और बगल में कोविड वैक्सीन लिखा हुआ है दीवाल का कलर सफेद है।

पिंक और रेड कलर के फ्लावर लगे हुए हैं चित्र जो बहोत ही मनमोहक दिखाई दे रहा हैं।

सामने के चित्र में छठ पूजा को दिखाया गया है जिसमें कुछ औरतें पूजा करते हुए दिखाई दे रही है कुछ लड़कियां कुछ औरतें खरी है लड़के और लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं एक लड़का जो येलो कलर का टी शर्ट पहना है बच्चा---

जो कि एक लाल रंग का है और उनके पीछे टैंक लगा हुआ है जो कि लाइट ब्लू कलर का है।

औरतें बहोत सारी खड़ी हुई हैं कुछ आदमी खड़े हुए हैं औत औरतों ने--

ये एक कारखाने का चित्र है जिसमें कुछ मशीने हैं मशीनों का कलर लाइट ब्लू कलर का है और कुछ लोग हैं और बोरियों में कुछ सामान रखा हुआ है कुछ लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं फैक्ट्री का जो कलर है वो ब्राउन कलर का है ऊपर कुछ ब्लैक कलर का शीट बिठा हुआ है।

ये एक पत्थर से बना हुआ कोई स्मारक दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं।

कुर्सियां रखी हुई है एक लैपटॉप रखा हुआ है और ऊपर--

कुछ फोटोस रखी हैं जो सर्टिफिकेट की फोटोस है।

सामने चित्र जो दिखाई दे रहा है उसमें ब्राउन कलर की चेयर है सामने पीठ--

जिस जो ने पत्थर के ऊपर खड़ा है उसने रेड रंग की टी शर्ट और ब्लैक पैंट पेहना हुआ है और नीचे एक आदमी बैग टंगा हुआ है जिसने ब्लू रंग की शर्ट पेहनी हुई हैं।

ट्रक का कलर ब्राउन है और खेत के पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ है जिनका कलर ग्रीन है और जो खेत पर पौधे लगे हुए उनका कलर भी ग्रीन है खेत बहोत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है।

सामने चित्र जो दिखाई दे रहा है उसमें बहोत सारी चेयर रखी हुईं है चेयर का कलर रेड और ब्लैक है दो आदमी बैठे है आदमियों ने--

चेक कलर की शर्ट पहनी हुई चेक चेक वाली शर्ट पहनी हुई है एक ए_सी लगा हुआ है और बगल वाले कमरे में ब्लू रंग की चेयर बिछी हुई है।

ये किसी रेलवे स्टेशन का चित्र है जिसने एक ट्रेन है।

सामने जो चित्र है वो एक जिम का चित्र मे जिसमें बहोत सारी मशीनें लगी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है चार मशीनें है।

फोटोस में बहोत सारी लेडिस जिम करती हुई दिखाई दे रहीं है और नीचे जो फर्श का कलर है वो ब्राउन कलर का है।